यहाँ पर एक बहुत बड़ा कच्चा मैदान है मैदान मे बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है और वाहन वगेरा खड़े है।

और एक साइड मे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है और कुछ औरते खड़ी हुई है आदमी और बाइक रखी हुई है।

यह एक रूम है इस रूम में काफी सारी चेयर रखी हुई है और टेबल रखी हुई है दोनों साइड और यहा पर ए.सी लगी हुई है।

यह एक मालगाड़ी है जो प्लेटफार्म से आगे खड़ी हुई है इसके साइड में रेल की पटरी बनी हुई है और इसमें गिट्टियां डली हुई है।

और यहाँ पर पर्दा डला हुआ है एक दीवार मे और एक दीवार मे अह मूर्ति बनी हुई है जो ऑरेंज कलर की है।

बाहर कुछ पंखे रखे हुए है और एक कार्टून रखा हुआ है बाहर दो बाइक भी रखी हुई है और कुछ सामान रखा हुआ और लाइट की खंबा है।

यहा पर और भी पटरिया बनी हुई है ट्रेन की और यहा पर लाइट के तार लगे हुए है बहूत सारे खंबे है लाइट के।

यहाँ पर काफी बड़ा मैदान है मैदान के सामने बिल्डिंग बनी हुई है उसमे कुछ पेड़ लगे हुए है यहाँ पर पार्क गाड़ियो के लिए पार्किंग बनी हुई है यहाँ लाइन से बहुत सारी गड़िया बाइक्स खड़ी हुई है।

यह एक ऑफिस है। इसका बहोत बड़ा गेट है। जिसका कलर ब्लॅक है। इस गेट के उपर एक बॅन बॅनर लगा हुआ है। जिस--

छोटे बड़े और बड़े भी पेड़ लगे हुए है। साइड मे भी बिल्डिंग बनी हुई है।